बगल में बिल्डिंग भी दिख रहे हैं।

पाईप्स भी लगी हुई हैं पानी के लिए।

और खिड़कियां भी है और कूलरस भी लगे हुए है।

यह बहुत सुंदर नजारा दिख रहा है।

यह किसी चीज का कार्यक्रम हो रहा है।

गार्डन की तरह दिख रहा है।

जो डिजाइन से कटे हुए दिख रहे हैं।

अह बहुत बहुत अलग-अलग डिजाइनों की इयररिंग्स और --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

यहां किसी का घर बन रहा है।

और बगल में बहोत बड़ी बली बिल्डिंगे भीं दिख रहीं हैं।

यह एक सैनिटाइजर दुकान की तरह दिख रहा है।

और कुछ लोग यहां बाहर पर बैठे हुए हैं।

इस स्कूल में कुछ बड़े बड़े पेड़ पौधे भी लगे हुए हैं।

जिसे हम राधा कृष्ण कहते हैं।

इस लाइब्रेरी में कोई नहीं है अभी।

पहाड़ मे बहोत से पेड़ पौधे भी दिख रहे है।

और एक टेबल भी है और एक चेयर भी रखा हुआ है।

कुछ शादी वादी की कुछ चीजे हो रही है।

जहां पर कुछ झरना लगा हुआ है।

यहां एक छोटी सी बच्ची और इसके मम्मी पापा खड़े हुए हैं।

यह एक शोरूम की तरह दिख रहा है।